ऊपर की ओर बल्ब लगा हुआ चारों तरफ हरी कलर की मैट लगी हुई है।

लोहे की रॉड है जो ल लगी हुई है पिलर बना रहा है उससे बहोत सारी लकड़ियां हैं जो लगी हुईं हैं काम पे चारो ओर और भी घर बने हुए --

सामने एक बड़ा सा हॉल है हॉल में बहोत सारे कांच लगे हुए हैं।

ऊपर की दीवाल में कैमरा लगा हुआ है।